मेन गेट दिखाई दे रहा है और यहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे और दूसरे डिजाइंस भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत बारीकी से बनाए हैं।

आस पास यहां बड़े और छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

ये पानी नल दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े और यहां पे एक--

बड़े से लोरी ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और यहां पे बहोत सारे ग्रिल है कंपाउंड वॉल हैं पानी के टैंक हैं।